यह एक रोड है जिसमें इंजीनियर लोग है रोड बनाने के लिए इधर भी इंजीनियर है उधर भी रोड का बना रहे हैं इंजीनियर लोग और कुछ लोग देख रहे हैं वह गाड़ी है गाड़ी है जा रही है और और कुछ इंजीनियर भाई लोग जो हैं वो रोड का फोटो औटो ले रहे हैं।

और अच्छा लगता है कि आदमी सब कुछ ना कुछ काम कर के अपना काम कर रहें हैं।

ये एक एक्सर्साइज़ रूम है जहाँ पे लड़के लड़किया एक्सर्साइज़ करने के लिए जाते हैं जिसे हम अपने भाषा मे जिम कहते हैं | एक भैया वहाँ एक दादा भी वहाँ खडे हुए हैं और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज और घर भी बहुत सुन्दर सुन्दर है|

और अम्म बहोत अच्छा चीज है। ये एटीएम मशीन --